आगे खड़ा हुआ है उस मंडप में दो दिल बना हुआ है।

मिल के बीचो बीच में अरे अरे जहां चरी है उसके बीचो बीच में एक--